साथ ही हमें एक घर जैसा दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर मेरे सामने एक रोड दे--

एक बड़े से स्विमिंग पूल को--

साथी यहां पर कुछ छोटी घास भी उगी हुई है सामने हमें कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे।

कुछ गाड़ियाॅं भी रखी हुई हैं।

बैग पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें कुछ लोग नजर आ रहें हैं।

पहाड़ का रंग ऊपर से काला नजर आ रहा है।

एक प्रेस बना हुआ नजर आ रहा है।

बाहर हमें एक चबूतरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें सामने एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

हमारे सामने भूरे रंग के कुछ चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

साथ ही ऊपर एक नीले रंग का बोर्ड लगा है।

बड़ा सा लोहे का दरवाजा नजर आ रहा है।

यहां पर हम सामने एक बड़ी से--

एक बड़ा सा नीले रंग का डस्टबिन भी हमें यहां दिखाई दे रहा है।

सामने टेबल पर कुछ सामान रखे हुए हैं साथी हमें कुछ कांच की जार --